जो आर्टिफिसियल बनाया गया है जो --

मेंदील है यहाँ पर लोग--

जो दिखने में बहुत अच्छे लग रहे है।

जनरल समाने मिलते है।